कई तरीके के झूले दिखाई दे रहे काफी बड़े बड़े झूले हैं और क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग इनमे घुमाए जाते हैं इसकी टिकट भी लगती है जो कि फ्री --

जैसा की हम देखिए हमारे सामने ऐ जो कि ऑफिस दिखाई दे रहा है जो कि ट्राफिक पुलिस का ऑफिस है और --

और ये गिट्टी इस लिए लगाई दी जाती है। पत्थर ताकि यहाँ की मट्टी का कटाव ना हो सके और काफी लाभ है जो कि --

पटाखों की दाम है जोकि इसमे कई तरीके के पटाके मिलते हैं। ओला या रोकेट --

इन लोगो ने अपने बच्चे का बर्थडे मानाया है। काफी अच्छा धूम-धाम से।

जैसा की हम देख रहे हैं। हमारे सामने एक जिम सेंटर दिखाई दे रहा है जो की काफी बेसमेंट में बनाया गया है काफी बड़ा है जो की --